पेड़ वगैरा हैं और पेड़ के ऊपर--

और लेफ्ट साइड में बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

सब आसमान भी दिख रहा है सामने की ओर बहोत अच्छी पहाड़ी भी है।

पर्दा भी नजर आ रहा है।

और यहां कई सेल्समैन भी खड़े है और कुछ लोग खरीदने वाले भी--